और कुछ बिजली के बोर्ड भी दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ ऑटो रिक्शाए दिखाई दे रही हैं।

और इनके ऊपर तीन डब्बे रखे हुए हैं व्हाइट कलर के।

कुछ अनानास रखे हुए हैं कुछ आलू रखे हुए हैं अलग अलग।

पिंक कलर के और ग्रीन कलर के फूल भी दिखाई दे रहे हैं।

कुछ लाइटें रेड कलर की दिखाई दे रही हैं।

जोकि बहोत पुरानी हो चुकी है।

यह एक क्लास रूम दिखाई दे रहा है।

इसमें तो अंब्रेला भी दिखाई दे रहा हैं जो कलरफुल है रखे हुए हैं।

और जो चार्ट बनाया हुआ है उसमें भी कुछ अंब्रेला दिखाई दे रहे हैं कुछ बादल--

कुछ रेड कलर के कुछ ग्रीन कलर के कुछ पिंक कलर के कुछ येलो कलर के --

इसके ऊपर एक बिल्डिंग भी बनी हुई हैं जिसमें शीशे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं ग्रीन कलर के।

और एक रेड कलर की मेज पर रखा हुआ है जो कि दो व्हाइट कलर के हैं और एक ग्रीन कलर का है।